यहां इन बोरों को लाइन से लादा गया है।

बगल में एक नल और कुछ पाइप दिखाई दे रहे हैं।

यहां मैं एक रोड देख पा रही हूं जो कि रेलवे स्टेशन के बगल में है।

यहां पे एक टेबल पे बहुत सारी दवाइयां रखी हुई हैं।

सारे पत्थरों को भी देख पा रही हूं।

यहां पे स्टेज पे मुझे बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।